एप्रेन पहना हुआ है पीछे दो दरवाजा है।

और एक जेंट्स पार्लर है।

पानी पाइप है छोटा छोटा पत्थर है।

एक साइकल खरा हो करके रखा है जिसमें--

बहुत सारा पेड़ पौधा है।

एक दुकान का बाहर में एक आलू बस्ता रखा हुआ है।

चटाई रखा हुआ है झाड़ू रखा हुआ है।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

बैठने के लिए बेंचेज रखा है डस्टबिन है।

ट्रेन के बोगी खड़ा करके रखा हुआ है।

वॉल प्रूफ हैं व्हाईट कलर का दीवार हैं।

बाहर में ए_सी डखे हैं।